वो पार्क में छोटा छोटा घास भी उगा हुआ है।

यहां हमें एक ट्रेन दिखाई दे रहा है चार बॉक्स वाला।

बहुत सारा खिड़कियां भी है।

बाहर में सीलिंग में लाइट भी लगाके है बल्ब --

जंगल का बीच में थोड़ा तार भी दिखाई दे रहा है।

इनमें एक ठो घास है।

आसमान भी साफ है साइड में टावर देखने को मिल रहा है पीछे में।

और उसका बाहर में बहुत सारा आदमी लोग खड़ा हुआ है बैठा हुआ है।

ऊपर की तरफ में इलेक्ट्रिक वायर भी देखने को मिल रहा है।

दोनों तरफ में बहुत सारा जंगल है पेड़ भी है।